कर हम ये कह सकते है की यह एक पंडाल की तस्वीर ह जहाँ पर बहुत ही अच्छी पंडाल की गयी है यह एक पिले और भूरे रंग की पंडाल का मिक्सिंग है अभी सुबह हुआ है और धुप काफी तेज भी दिखाई दे रही है।